हमें इस फोटो में कई सारे लोग एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जोकि पीछे की ओर एक महिला है और--

एक डॉक्टर लैपटॉप में काम करते हुए दिखाई दे रहा है। रजिस्टर और कई सारी फाइले रखी दिखाई दे रही हैं।

साइड में एक ड्रम रखी हुई दिखाई दे रही है नीचे की ओर टाइल्स लगीइ हुई ऊपर की ओर व्हाइट कलर से पोता गया है साइड में मीटर लगा हुआ दिखाई दे रहा --

मुझे इस फोटो में माधव माधव नगर रोड दिखाई दे रही है जिसमें एक स्टेशन बना हुआ दिखाई दे रहा हैं।

फंक्शन हुआ दिखाई दे के जिसमें जिसके ऊपर कई सारे कुर्सियों पे इंसान बैठे हुएं दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो में सामने की और एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जो बड़ा सा पहाड़ है।

वायरिंग की गई है। लोहे के खैस कई सारे खम्भे लगाए गए है। नेचुरों टाल्स है। ऊपर की ओर--

पेड़ दिखाई दे रहे है साइड और पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई--

शीशे के ऊपर की ओर कांच लगायी हुई गेट दिखाई दे रही हैं।

उतरा हुआ बारिश का समय दिखाई दे रहा है दिखाई दे बाहर की ओर गार्डन में हरी-भरी घास लगी हुई दिखाई दे रही है लोहे के पाइप बने हुए है।

घर बना हुआ दिखाई दे रहा है साइड में एक कार भी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की आसमान साफ दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

एल_ए_एक्स_एम_ए_व्ही_आई_एल_ए ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे वो शटर लगाई हुई दिखाई दे रही है जिस तरह बंद--

मुझे इस फोटो में एक एक दुकान दिखाई दे रही तीन से चार दुकान दिखाई--

खड़ी हुई दिखाई दे दे रही हैं।